ऊपर दीवार दिखाई दे रही है दीवार पर टाइले भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक वाशबेसिन भी लगा हुआ दिखाई--

गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारी मैजी भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे काड़े की खोल भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

और दीवार दिखाई दे रही है दीवार येलो कलर की दिखाई दे रही है दीवार पर ग्रिल भी दिखाई दे रही है।

घड़ का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।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

यहां पर बहुत सारी लाइटे भी दिखाई दे रही है।

कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रे है।

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में हरी घास भी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे --

यहां पर बहोत सारे भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक शॉप नजर आ रही है ये फ्रॉक की शॉप दिखाई दे रही है।

यहां पर एक फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा फ्रिज में बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा --

यहां पर बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट भी दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे--

यहां पर बेंचो का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और यहां पर बच्चों के बेंचो का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा --

यहां पर कंपनी का कलर वाइट कलर का दिख--